जो कि ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती हैं।

घर के आगे हमें सीमेंट से बना हुआ एक रास्ता देखने को मिल सकता है।

इस में फोटो हमें दो पेड़ भी देखने को मिल सकते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक आदमी पानी भरता हुआ दिख सकता है।

यह तस्वीर शायद किसी होटल रूम का है।

जिसके आगे एक पानी की टंकी लगी हुई है।

उसके सामने हमें खुला मैदान भी देखने को मिल सकता है।

इस तस्वीर में हमें पहाड़ देखने को मिल सकते हैं।

इस पार्क में हमें कई सारे पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं।

ये किसी कपड़े की दुकान लग रही--

एक मिट्टी से बना हुआ रोड दिख रहा है बाकी घास दोनों तरफ दिख रहे हैं।

यहां एक लोहे का ब्रिज दिख रहा है जो शायद किसी नदी के ऊपर बनाया हुआ है।

इसके सामने हमें दो टीने के घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत से रंगों के कैरेट भी रखे हुए हैं जिसमें मछलियां रखी हुई है।

इस तस्वीर में हमें तीन टीने के घर देखे जा सकते हैं।

यहां पे हमें तीन लोग बैठके खाते हुए दिख सकते हैं।

यह किसी होटल का दृश्य है।

यहां पे एक आदमी खाना बना रहा है।

यहां पे यामाहा कंपनी की बहोत सारी गाड़ियां स्कूटीज देखने को मिल सकती हैं।

यह एक होटल का तस्वीर है जहां मिठाइयों के साथ साथ और भी खाने की सामान मिल सकती है।